इस तस्वीर में देख रहे हैं ये जो तस्वीर है यहाँ पर ये वो बहोत बड़ा ऑफिस है और यहाँ पर --

ये सामने जो ही शायद ये एयरपोर्ट है। यहाँ पर काफी सारी चेयर हैं।

है यहा पर काम चल रहा है जैसे कि लिंटर पड़ रहा हो या फिर --

जोकि मालिक देखने के लिए आए है और पीछे टीन सेट पड़ा हुआ है और हम देख रहे हैं।

ये किताबों का है और यहां से बी.कॉम या फिर बी.एस.सी --

जोकि सर पर परात रखकर ला रहे हैं और उसमें जो की डालेंगे और हम --

हम इस तस्वीर मै देख रहे हैं। ये जो तस्वीर है पूल की है। पूल के नीचे एक नदी है जो की --

यहाँ पर देखिये ये एक रपटनी है और रपटनी के साइड मै जीना है। जिस जिने से बच्चे चढ़ते है और जाकर उस रपटनी से लिपपकर आते हैं।